देखा ये ग्रीन कलर के रखे हुए है और यहाँ ये मिट्टी दिख रही होगी आपको और ये घाँस सी रखी है।

ये देख रहे हो ये पिली शर्ट अ पहने हुए है टी-शर्ट हाफ और यहाँ रेसिंग हो रही है और ये --